वो एक लाइट वाला के छत पे हो रही है निचे प्लास्टर है साइड में बटन भी लग रहे है लाइट वाले प्लग भी है।

यह गार्डन है इसमें बेठने के लिए तीन कुर्सियां भी लग रही है आगे बड़ा सा गेट दिख रहा है और यहाँ पे एक गेट भी लग रहा है साईड में ब्रिक्स भी लग रहे है और जाली लग रही है प्लेग्राउंड अलग है खेलने का।

ये ताज महल है इसके उपर की और से भी तार जा रहे है और नीचे भी एक ब्रश दिख रहा है पता नही किसका है और धोला धोला इसपे कलर हो रहा है।

ये एक स्कुल है उपर मे एक बादल भी आधी धुप आधी छाया हो रही छे साईड से भी छाया हो रही है इसमे हरे हरे पत्ते भी पड़े है।

साथ में बेठेने के लिए सीटें भी लग री है और बिल्डिंग भी है इसमें येलो कलर भी हो रा है और पीला कलर भी हो रहा है नीचे --

यह एक बड़ा सा ऑफिस दिख रहा है इसके पांच छ: नीचे सीढिया भी लग रही है इस ऑफिस के बड़ा सा गेट भी है साइड में एक गाडी भी खड़ी है और उसके आसपास वृक्ष भी लग रहे है।

इसमें देखो आसमानी नीचे फर्श बिछ रा है और खिडकिया भी लग रही है उपर है ना सजावट हो रही है कुछ फ्लावर जेसे दिख रहे है और खिडकिया लग रही है लाईट --

ये एक डेकोरेशन हो रहा है ये कोई मंदिर हो सकता है इसमें हाथी गमला फुल के चित्र भी बन रहे है एक बिजली का खंभा भी है इसे चारो और तरफ--